ये तस्वीर में हमें तंबाकू के पैकेटें नजर आ रही है।

इस पिक्चर मे हम खिड़कियों को देख सकते है।

इस पिक्चर में हमें कुछ व्यक्ति बैठे हुए नजर आ रहे है।

इस पिक्चर में हमें फूल नजर आ रही है।

दिखाए जाने वाले छवि में हम एक दुकान को देख सकते हैं।

इस पिक्चर में हमें एक बार्बल चूल करते हुए नजर आ रहा है।

दिखाए जाने वाली छवि में हमें एक नीला सा आसमान नजर आ रहा है।

तस्वीर में हम बिजली के खंभे को देख सकते हैं।

दिखाए जाने वाले छवि में हमें एक सफेद रंग के कार नजर आ रही है।

यह तस्वीर में हमें एक व्यक्ति नजर आ रहा है।

ये तस्वीर में हमें केले नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें कुछ सामान रखे हुए नजर आ रहे हैं।

इस पिक्चर में हमें एक व्यक्ति हाथी की स्टैचू पे बैठे हुए नजर आ रहा है।

दिखाई देने वाले छवि में हम तीन नाव को देख सकते हैं।

यह तस्वीर में हम एक ग्राउंड को देख सकते हैं।

ये छवि में हम एक खुला नीला आसमान को देख सकते हैं।

इस पिक्चर में हमें कुछ मनुष्य बैठे हुए नजर आ रहे हैं।